और यहां पे यह बस में कम पैसे में लेके जाते हैं और बहोत अच्छे सुंदर बस है।

जो कि योगा करना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा और सुन्दर और यहाँ पे योगा कराए जाते है। इसीलिए लोग यहाँ दो --